छवि में आधार एनवायरनमेंट और अपडेशन सेंटर की अंदर की फोटो की गई जहां पर तीन कुर्सियां दिख रही है काले रंग की।